चित्र है कप मे पड़ी हुई काफी का है जिसमे ट्रे है ट्रे पर कप रखा हुआ है कप मे कॉपी है आसपास छोटी चमच है।

यह एक बच्चों के खेलने के मैदान का है जहा हम फिसल गुंडिया फिसलगुंडी रखी हुई है।

और इसके आस पास एक छोटासा बगीचा भी बना हुआ है बगीचे मे झाड है और आस पास उसके पूरा मैदान है।

और म दुसरी सब्जीया भी है और फल भी है केले भी है और पपया भी है आलू भी है।

चित्र रेल्वे फाटक का है यह पर से गाडियाँ गुजरती हैऔर यह पर पानी के लिए भी दिया हुआ है।

यह जल आधारित मनोरंजन का है जहा बहोत सारा अ अ रंगबिरंगी टायर लगे हुए ला--

यह चित्र विमल प्लाज़ा का है जहा पर ह बहुत सारी दो पहिया वाहने भी खड़ी है और बहुत से लोग आ जा रही है।